यहां पर सैनिक परेड कर रहे हैं।

गेंडा का रंग काला है और ऊपर एक टिन शेड भी बना हुआ है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं।

प्रतिभागियों में कुछ लोग बैठे हैं।

टेलीविजन के नीचे एक व्यक्ति की तस्वीर बनी है।

एक लाल रंग का डस्ट्बिन भी रखा हुआ है।

और नाव भी है। आसमान काला तथा सफेद है।

दिन में कई कुर्सियाँ लगी हुई है।

एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है। एक ऑटो भी है।